जिसके अंदर दो टेबल दिखाई दे रहे--

के बहुत सारे घाच लगाए हुए हैं।

आगे तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

और ये तस्वीर में मुझे एक वॉल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक छोटा सा दुकान भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में मुझे कई सारे नींबू दिखाई दे रहे।

कई महिलाएं और कई पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जिसने--

और दुकान में एक अग्नि नाशक यंत्र भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और मुझे बहोत लंबे लंबे घर दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़की का भी तस्वीर दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा ब्लर है।